और की बाहों में पकड़े और सफ़ेद कलर की शर्ट पेहने है नीले कलर का पैंट लड़की ने लाल कलर की साड़ी पेहनी है उन और उनके बैकग्राउंड में हरे-हरे कलर के पेड़ लगे हैं।

ता-तार जा रहे हैं घर बने हुए हैं घरो की बगली में बहोत सारे पेड़ हैं कुछ पेड़ उ-उ सड़क की बगली से भी लगे हुए हैं।

वाइट कलर की माला है उनमें एक गोल्डन कलर का डला हुआ है और नीचे गुलाब के फूल है।

मैदान में मैच खेल रहे है हरे कलर की स्टंप है और रेड कलर का बल्ला है ब्लैक कलर पेहने है जो खेल रहा है और --

ट्रेन जा रही है उसकी बगल से कुछ लोग चल रहें हैं एक लेडिस झोला पड़कर और एक आदमी भी झोला पकड़ कर चल रहा है ट्रेन का रंग नीला है।

ये अलमारी का रंग पीला है फुटबॉल व्हाइट और नीले कलर की और रेड कलर की है।

एक पुतले ने रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है और नीले कलर का पैंट है पीछे लडकियों की फ्रॉक टंगी हुई है और पीछे जो फर्नीचर लगा हुआ है उसका रंग चॉकलेटी है।